इस तस्वीर मे नीला आसमान नजर आ रहा है हरे भरे पेड़ नजर आ रहे है और दो व्यक्ति चलते हुए नजर आ रहे है एक सड़क नजर आ रही है और एक चार पैया वाहन खड़ा हुआ नजर आ रहा है दाहिनी ओर--

बिजली की तारे नजर आ रही है और दो पय्या वाहन खडे हुए नजर आ रहे है।

इस तस्वीर मे एक लड़की के बाल नजर आ रहे है जिसके बालों मे चोमड़े बने हुए है और क्लिप्स लगी हुई नजर आ रही है और दाहिने तरफ शेल्फ मे पानी का स्प्रे रखा हुआ नजर आ रहा--

जिस के उपर कुछ मूर्तिया रखे उसे लाइटो से सजाया गया है उसको लोग इर्द गिर्द देख रहे है।

और दो पय्या दो वाहन खड़े हुए है और एक बुढा व्यक्ति चल रहा है।

खड़े होकड धर्मा देता हुआ नजर आ रहा है।

और उसको सजाया गया है।